महिलाओं ने रंग बिरंगे पारंपरिक घाघरा चोली पहन रखी है जिससे यह राजस्थान की प्रतीत हो रही है।

झरने के ऊपर और नीचे कुछ लोग मौजूद है जो इनका आनंद ले रहे है।

सामने फुटपाथ पर चल रहा एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

जो किसी धार्मिक या सार्वजनिक स्थल की तरह लग रहा है।

इस तस्वीर में एक मस्जिद या नमाज़ पढ़ने की जगह दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक कैफे की दिख रही है।

इस बरामदे में दोनों तरफ खिड़कियां और जालीदार ग्रिल लगी हुई है।

यह तस्वीर एक स्टॉल या प्रदर्शनीक क्षेत्र को दिखा रही है।

जैसे मसले साबुन शैंपू तेल ट्रॉफी और अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं--

इसमें एक भाप इंजन का मॉडल रखा गया है।

इसमें छत को सपोर्ट करने वाले नीले पाइप टाइल्स लगी हुई फर्श --

यह तस्वीर एक सैलून या मेकअप स्टूडियो की प्रतीत हो रही है।

इस तस्वीर में एक चर्च गिरजाघर का आंतरिक दृश्य दिखाया गया है।

यह तस्वीर एक चर्च के सामने एक सामूहिक सभा को दर्शाती हैं।

इसके प्रवेश द्वार पर कुछ लोग खड़े हैं।

यह तस्वीर एक हिंदू विवाह या धार्मिक अनुष्ठान को दर्शाती है।

यह तस्वीर एक मेले या सार्वजनिक उत्सव का दृश्य दिखाती है।

सफाई कर्मचारी झाड़ू से गिरे हुए पत्तों और कचड़ों को साफ कर रही है।

एक बड़ी इमारत नजर आ रही है जिसके बीच में बड़ी कांच की खिड़कियां है जो अंदरूनी हिस्से को स्पष्ट दिखाती है।

यह तस्वीर एक अस्पताल का स्वागत क्षेत्र दिखा रहा है।

यह तस्वीर एक शांत जलाशय तालाब या सरोवर को दर्शाती है।

पानी का रंग गहरा और स्थिर प्रतीत हो रहा है जिससे इसकी गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है।

यह तस्वीर एक प्राकृतिक परिदृश्य को दर्शाती है।

जिसमें जलाशय हरियाली कुछ तार के पेड़ और आकाश में ढलता हुआ सूर्य दिख रहा है।

यह दृश्य एक शांत और सुरमई वातावरण को प्रतिबिंबित करता है।

एक उत्सव या समारोह का माहौल नजर आ रहा है।